यहाँ पे हमे एक स्टेज की पिक नजर आ रही है यहाँ पे स्टेज की एक मिडल चेयर हमे नजर आ रही है साइट्स चेयर हमें नजर आ रही हैं स्टेज हमे शो हो रहा है।

--लगी नजर आ रही है अ और टी_वी आ नजर आ रही है फिर शॉप हमे नजर आ रहीं है कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं साड़ी की शॉप हमे नजर आ रही है टूल्स की शॉप हमे नजर आ रही है यह पे लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।

वाल पे डिज़ाइन बना है वो हमे दिखाई दे रहा है बच्चे डांस कर रहे--